दो साइड्स से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

यहां पे कुछ अजीब पिलर्स खड़े हैं।

और भी बच्चों की खेलने के झूले लगे हुए--

यहां एक बहुत ही बड़ा स्टेज है।

काफी लड़की का काम सुंदर किया गया है और अभी कुछ कार्य अधूरा है।

यहां दो तीन पंखे लगे हुए हैं कुछ चेयर भी रखा हुआ है।

यहां फैन लगा हुआ है और बहुत सारी लाइटिंग लगाई गई--

यह एक ग्रोसरी की दुकान प्रतीत हो रही है।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

कुछ रिपोटर्स भी मौजूद है यहां पर।